यहां मैं एक बड़ा सा ग्राउंड देख पा रही हूं।

सामने मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारी ईंटे--

यहां पे मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहां मैं एक रोड देख पा रही हूं जिसके बीच में मुझे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।

यहां मैं बहोत सारी मंदिरों को देख पा रही हूं।